का डिजाइन किया जा रहा है जो की यह देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

चार लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर मछलियां लेने के लिए आये हुए हैं |

और हरे-हरे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं जो कि यह नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत है।

और यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी लाइटें भी लगाई --

जो यहां देखने में यहां बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहां --

यह देखेन में काफी बढ़ा और लंबा है।

ठा हुए हैऔर यहाँ बहुत अच्छी --

एक होटल भी है जो यहाँ पर बहुत बड़ी बोर्डो में लिखी --

सीधे और ये मस्जिद देखने में काफी खूबसूरत लग रहा --

देखने में बहुत ही सुन्दर है यहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई --

पेट्रोल पंप में अभी काफी भीड़ है।

और यह बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है यह बिल्डिंग --